दो रास्ता है देखने मे बहुत अच्छा लगता ओर हरे भरे पेड़ पौधे है बहुत अच्छे लगते है दिखने में बहुत सारी चीज़ है दिखने में बहुत बहुत अच्छे लगता है हरे भरे पेड़ पौधे है बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं।

बहुत अच्छा लगता है दिखने में। बहुत सारा चीज है और घर मे है। बहुत ही अच्छे लगते है दिखने में। बहुत सारा चीज है। दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं।

हम देख सकते है बहुत सारे चीज है पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छे लगते है देकने में पता नहीं क्या है अच्छे लगते है